सामने हमें एक रोड दिखाई दे रहा है जहाँ पर कुछ लोग चल रहें हैं कुछ लोग गाड़ियोँ में बैठे हुए हैं और आस-पास कई सारे पोस्टर चिपके हुए हैं और कई सारी बिलिंगे भी बनी हुई हैं कुछ ट्रांसमिशन लाईने दी गई हुई हैं।